सामने घर हैं शहर बाहर कुआँ हैं उसके आस पास पेड़ पौधे हैं सामने बिल्डिंग हैं ।

घर है घर के बाहर झूला है पाइप है कुआ है बना हुआ आसपास पेड़ पौधे है ।

ये ग्राउंड है इसमें काफी सारे प्लेयर्स है आसपास पेड़ पौधे हैं ये ग्राउंड है इसमें प्लेयर्स है आसपास पौधे हैं ग्राउंड है ।

ये सामने मंदिर है मंदिर के अ पास पानी है पास पेड़ पौधे हैं ।

सामने मंदिर है मंदिर के पास पानी अ ब सीढियाँ हैं ।

पोस्टर हैं दुकानों के बाहर बोर्ड लग रहे हैं पोस्टर हैं दुकानों के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं ।

और हैं इसमे योगा क्लासेस हैं इसमें हॉल हैं काफी सारी लाइटे जल रही हैं लोग योगा कर रहे हैं ।

काफी सारी लाइटे जल रही हैं ये कमरा है इसमें काफी सारी रंग-बिरंगे लाइटे जल रही हैं ये कमरा है इसमें काफी सारी लाइटे जल रही हैं।

इसके सामने काफी सारी बिल्डिंग है इसके बाद बोर्ड लगा हुआ हैं गाड़ी खड़ी हैं बाइक खड़ी हुई हैं ।

उम गाडी खड़ी हैं उसका बहुत दूर हैं ।

दुकान हैं दुकान में लकड़ी का सामान रखा हुआ दुकान हैं दुकान में लकड़ी का सामान रखा --

एक सैलून है इसकी ओपनिंग हुई है काफी सारी लाइटे जल रही है रंग बिरंगे बैलून है ।

ये हिस्सा है अ व स्टैंड हैं हॉल हैं इसमें काफी सारे लाइटे जल रही हैं ऑटो खड़े हुए लेंसे --

पुल ये पुल हैं पुल के नीचे काफी सारे ऑटो खड़े हुए व्यक्ति खड़े हु--

नदी हैं नदी में पानी में कोई व्यक्ति नहा रहे है नदी में कुछ व्यक्ति नहा रहे है पानी गिर रहा हैं ।

ये एक वाटर पार्क हैं इसमें काफी सारे झूले हैं और गमले हैं।

ये वाटर पार्क है इसमें पानी है इसमें काफी सारा ये वॉटर पार्क काफी सारा --

ये कमरा है इसमें काफी सारी लाइटे जल रही हैं बेड है तकिये खिड़की है टेबल है टेबल पे बोतल रखी है कुर्सी है।

इसमें काफी सारे रंग बिरंग के झूले हैं वटर पार्क है इसमें काफी सारे रंग बिरंग के झूले हैं।

ये एक दुकाने हैं इसमें काफी सारे लाइटे जल रही हैं ।